यह एक बगीचा है यहाँ पर बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

यह एक दुकान है यहाँ पर बहुत सारी चीज उपलब्ध है यहाँ पर किसकी कलम भी है कॉपी भी है गम भी है।